और बाहर से फूलों से डेकोरेट किया गया है।

बुलेट बहुत ही सुंदर है बुलेट --

यह बस स्टैन है जहाँ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए यात्रियाँ अपने-अपने शहर जाने के लिए अलग-अलग बसों का इंतज़ार --

और इसमें जो नाव है वो टूट चूका है।

और एक घर भी है घर के आगे लगी है टॉवर भी दो-दो दिख रहा है।

और बस दिख रहा है और एक --

देखने में बहुत ही सूंदर है।